इस फोटो में चार पाँच आदमी बैठे हुए है इसकी दीवाल पर डेकोरेट है सितारे लगे हुए है एक वॉच लगी हुई है।

यह फोटो एक मकान की है जो की मकान बन रहा है कुछ मजदूर यहाँ पर काम कर रहे हैं कोई कुछ डाल रहा है तो कोई तार लगा रहा है और यहाँ से निचे से और भी लोग आ रहे हैं।

इसमें एक लड़की है जो की योगा कर रही है। इसके आसपास ब्लैक कलर के परदे लगे हुए हैं और इसके साइड में स्टार लगे हुए हैं और डेकोरेट है।

जिसमे लिखा हुआ है एल आई सी और इसके साइड से बोहोत से लोग फोटोस खींच रहे है और कुछ लोग इंजोये क्र रहे है।

यहां पर किसी की पूजन कर रहे है यहां पर मिठाईयाँ रखी हुई है और कुछ लोग देख रहे है।

यह एक शॉप है जिसमे-जिसमे बहुत सारा सामान रखा हुआ है इसमें कुछ पेन भी रखी हुई है।

इस फोटो में एक पार्किग है जो कि बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई है इसमें ऊपर लाइट भी लगी हुई है और एक पंखा लगा हुआ है इसके आस पास कुछ लोग है जो कि ।